लाल रंग की लकड़ी दिखाई दे रही है।

किनारे पर सीढ़िया दिख रही है जिस पे एक व्यक्ति खड़ा दिखाई दे रहा है।

पीछे नीला परदा दिखाई दे रहा है।

मछलियाँ खरीदते दिखाई दे रहे है।